और यहाँ पे जो है बड़ी-सी एक गेट है गेट बंद है गेट में ग्रील लगी है ग्रील का जो कलर है वो ब्लैक है और उसमें से काफी खूबसूरत ब्लैक कलर की गयी है और एक तरफ पूरा ही ग्रीनरी नजर आ --